इस पिक्चर मे एक प्राइवेट स्टेशन दिखाई दे रहा ।

एक आदमी एक औरत के बाल काट रहा है।

और साइड मे दो बिस्किट की --

इस पिक्चर मे एक आदमी समंदर के किनारे बैठा हुआ है।

लंगोट मे दिखाई दे रहा है।

ये चित्र में लोग दिखाई दे रहै हैं। इस चित्र में --

इस का कलर ग्रीन है और रेड है।